सब अलग अलग कॉलेज के बच्चे और आज का उधर साइड में पर्दा मारा गया लाइट जलाया गया है।

यहां पे एक स्कूल है स्कूल के चारों तरफ से बाउंड्री मार गया--

आगे साइड में सूरज भगवान डूबते हुए दिख रहे हैं शाम की तस्वीर है।